यहाँ पर कुछ चीजें टूटी हुई पड़ी है| यहाँ एक इंसान बैठा हुआ है और वो कुछ नाप रहा है उसके बगल मे एक झाड़ी है।

इसके पीछे काफी चीजें लगी हुई हैं। जो काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रही हैं और काफी सजावट भी हैं। पीछे एक मैटी पड़ी है जो लाल और काला है।

यह एक स्थान है जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

एक पैर उसका फर्श पर है एक पैर उसका ग्राउन्ड के मैदान में है जहाँ पर काफी सारी घांस है जो काफी हरी-भरी दिखाई दे रही है।

हाथ मे घड़ी पहने हैं और चश्मा लगाये है और चप्पल भी पहने हैं।

ये एक कमरा हैं कमरे मे कुछ लोग हैं एक लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं उन के ऊपर माला पड़ी हुए हैं और कमरे की सजावट काफी अच्छी हैं।

कुछ लोग भी हैं और वहाँ मेटिक भी हुई हैं उसका कलर हरा है और गेट पर एक लाइट लगी है जो की सुंदर है चम -चम्मकदार--

यह एक स्थान है जहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी बड़े बूढ़े बच्चे भी हैं।

वो मोबाईल चला रहा है और एक हादमी खड़ा हुआ है वो कोई मशीन लिए है बां पीछे जो का दो दरवाजे लगे है और कमरे का कलर यूनीक है।

उसके पीछे एक मैट पड़ी है जो की लाल रंग की है उस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यह एक पूजा स्थल है है जहाँ पर कुछ लेडीजे आई हुई है| और कुछ लोग पूजा कर रहे हैं कुछ लोग खड़ी हुई है।

कुछ मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है एक साइकिल है पीछे बिल्डिंग है जिसकी दीवाल का रंग सफेद है। बगल में पेड़ है। काफी हरा-भरा है।

यह एक हॉल है| हॉल में कुछ लोग हैं अधिकतर लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

गुब्बारे का कलर हरा ऑरेंज सफेद है।